एवं हरे भरे पेड़ पेड़ पौधे भी लगे दिखाई दे रही है।

जिसके बाहर ढेर सारे लोग खड़े हुवे हैं।

यह एक ग्राउंड का चित्र दिखाई दे रहा है।

यह एक साइकल दुकान का चित्र दिखाई दे रहा है।

तथा जमीन पर हरे रंग की चादर बिछी हुई है।

कुछ लोहे की रॉड भी नजर आ रही है।

जिसके बगल में एक बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

एवं रैक पर कई सारे खाने की समान रखी हुई है।

यहा एक घर का चित्र दिखाई दे रहा है।

इस पर काम लगा हुआ है तथा कई सारे व्यक्ति छत पर खड़े हुए हैं।

पर कुछ गाड़ियां भी दिख रही है।

यहां व्यक्ति लोग डांस कर रहे है।

एवं छत पर लाइटे भी लगी हुई है।

एवं कुछ लोहे की बाल भी दिखाई पड़ रही हैं।

यह एक दी चेन्नई स्किल करके मॉल का चित्र दिखाई दे रहा है।

एवं उसके अंदर एक टी_वी भी लगी दिखाई दे रही है।

यह एक दुकान का चित्र दिखाई दे रहा है।

एवं छत पर एक पंखा भी नजर आ रहा है।